सर में सेंटा क्लास का टोपी लगाया हुआ है जिसका कलर व्हाइट और रेड नजर आ रहा है।

और इसे एक दुकान का सामने में रेड और येलो कलर से आरती बुक सेंटर लिखा हुआ है।

सामने में एक आदमी है जो कि व्हाइट बोर्ड पे पडा रहा है।

नदी के बीच में बड़े से पत्थर नजर आ रहे है जिसपे की एक आदमी खड़ा है।

जहां आदमी खड़े हैं और और कुछ औरते बैठी हुई हैं।

यह दृश्य एक मार्केट का नजर आ रहा है जहां पे बहुत सारे गाड़ी चल रहे हैं।

पीछे में हरे भरे बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

यह दृश्य कार सर्विसिंग दुकान का है जहां पे सामने में एक येलो कलर का बोर्ड लगाया हुआ जिस पे लिखा हुआ है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस एनी कार सर्विस ।

आगे में दो टंकी नजर आ रहा है जिनका कलर ब्लैक है।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

आसमान का कलर व्हाइट और हल्का ब्लू नजर आ रहा है।

इसमें की तीन आदमी खड़े हैं एक आदमी के हाथ में बैट नजर आ रहा है।

अगल बगल बहुत सारे फ्लावर पॉट नजर आ रहे हैं सामने में एक सोफा लगाया हुआ जिसका कलर व्हाइट पर्पल और पिंक नजर आ रहा है ऊपर में बहुत सारे रोलेक्स लगाए हुए--

यह दृश्य एक दुकान का है यहां पे सामने में एक पोस्टर लगाए हुए हैं जिसका कलर कलर येलो --

गे की ओर एक लकड़ी फेंका हुआ है जिसका कलर ब्राउन नजर आ रहा है।

पीछे में बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं जिस्म की बहुत सारे गड्ढे रखे हुए हैं जिसका कलर मैरून और व्हाइट नजर आ रहा है।

दृश्य में चार कार नजर आ रहे हैं जिसमें की एक कार कवर किया हुआ है जिसका कवर का कलर रेड है।

सेम ब्लैक कलर का कुछ बड़ा बॉक्स टाइप में नजर आ रहा है।

दृश्य एक बफर सिस्टम के पंडाल का नजर आ रहा है यहां पे सामने का पंडाल का कलर रेड व्हाइट पिंक नजर आ रहा है ऊपर में बहुत सारे लाइट्स जल रहे हैं।

सामने में एक लाइट जल रहा है जिसका कलर हल्का व्हाइट और बगल बगल ग्रीन नजर आ रहा है।

यह दृश्य एक प्लेग्राउंड का है यहां पे बहुत सारे बच्चे और आदमी खेल रहे हैं।

यहां सामने में बहुत सारे फैन नजर आ रहे हैं जिनका कलर व्हाइट रेड है।

नीचे में दो डब्बे रखे हुए हैं।

दीवाल का कलर पिंक और वाइट है ऊपर में सीलिंग फैन लगाया हुआ है जिसका कलर ब्लैक है।